यहां पर कुछ लोग कार रिपेयर करते नजर आ रहे हैं।

यहां पर बड़ा सा शीशा भी नजर आ रहा है।

और यहां पर पर्दों का डेकोरेशन नजर आ रहा है।

इस इमेज यहां पर एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

यहां पर क्यू_आर कोड नजर आ रहा है।

और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स भी दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज़ में यहां पर एक ढाबा दिखाई दे रहा है।

जहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी नज़र आ रही है।

इस इमेज में यहां पर साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है।

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सियां लगी नजर आ रही है।